सामने एक जेंट्स है और उसके टेबल पे काफी सारे खाने के --

यह एक सेलून है और सैलून पे चेयर पे एक इन्सान बैठे हुए हैं जो चेयर है वो नीली है और एक --

प्रसाद की थालियां रखी हुई हैं और अगरबत्ती और दीपक जलरा है।

पौधो की पत्तियां दिखाई दे रही है जो एक जैसी है और पत्तियों के बीच में कुछ कुछ लाइनें बनी हुईं है।

लोहे के डंडे के ऊपर ईंटों कि दीवार दिखाई दे री है।

यहां एक क्लासरूम है जहां पर छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और इनके पास पैंसिल बॉक्स और कंपास और बुक्स वगेरा रखी हुई हैं।

और आंखे खुली हुई है नीचे भी छोटी- छोटी मछलियां पड़ी हुई है सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स है उसके ऊपर एक पानी की बॉटल रखी हुई है।